यहाँ पे अच्छी रेट पे कपड़ा मिलती है।

जंगलो में पेड़ है। बहुत घने-घने अ बड़े-बड़े--

बहुत सारे लड़के अपना वजन को कम करने के लिए --

दाढ़ी बनाता है बाल काटता है।

यह बहुत ही सुन्दर दिख रहा है।

बहुत सारे दुकान यहाँ पे है यहाँ पे एक माँ भवानी --

यहाँ पे लोग आते हैं।